इस तस्वीर मे मुझे एक बेड दिखाई दे रहा है।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

यहां मुझे कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे एक मेडिकल दिखाई दे रही है।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

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारे बॉक्स दिखाई दे रहे है।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

इस तस्वीर में मुझे लकडी का टृवारा दिखाई दे रहा है।